और ये व्यक्ति के अगल-बगल कई सारी लाइट वगैरह भी लगी हुई है और --

ये एक स्टेशन का चित्र दिखाई दे रहा है और इस स्टेशन पे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

और ये लोग आपस में बात चीत वगेरा भी कर रहे हैं और इनके अगल बगल काफी सारे लोग भी खड़े हुए --